हाथ में प्लेट ले के खाना खा रहे है अ कुछ लोग जो है वह सामने खड़े है और कुछ लोग जो है खाना ले रहे है ये हॉल जो है--

सोफा रखा हुआ है और कही कही पे लाइटिंग भी लगी है आप देखोगे तो वहा पे आदमी लोग खड़े है।

यह फोटो एक हस्पताल का फोटो है जिसमे पचास बिस्तर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे सामने आप देखोगे तो वहा पे वह चीज़ लिखी हुई है।

का जो रास्ता दिया हुआ है यहाँ पे एक येलो लाइन है जो की यह सुरुवात से शुरू होती है और एन्ड तक जाती है।

और रेड टीशर्ट और ब्लैक पेंट पहना हुआ है जिसके हाँथ में टेप है और वो कुस्ट भी नाप रहा है सामने इटे भी रही हुई है।

बड़ा-सा पहाड़ है इसमे उतरने की कोशिश कर रहे है अ पहाड़ पे बहुत सारे --

यह फोटो जो है वो एचपी पेट्रोल पंप का फोटो है जहाँ पे अ ये डीज़ल वाला एरिया है वहाँ का फोटो लिया हुआ है ।

यहाँ पे जो है दो पब दिखाई दे रहै है और इसका जो थीम है वो ब्लू थीम है और अ साइड पे जो हैं ऑरेंज --

यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे दो नंबर लिख के रखा हुआ है ये पेट्रोल पंप जो है दो नंबर का है और यहाँ पे सामने एक --

अ आपको कंक्रीट का रस्ता दिखाई दे रहा होगा और साइड में जो है वाइट और --

यह फोटो जो है वो किसी मजार का फोटो दिख रहा है अ मजार की बिल्डिंग का फोटो अ बिल्डिंग मजार की बिल्डिंग में जाने के लिए गोलनुमा सीढियां हैं।

और उसके बाद यहाँ पे एगो लाल कलर की सिल्वर कलर की ब्लैक कलर की--

और आ बाजु में अ जूस का जो ब्राउन कलर की मिटटी है वो दिखाई दे रही है और सामने जो फार्महाउस है।

यह फोटो जो है अ राहुल दौना पत्तल सेण्टर का है और जहाँ पे अलग-अलग चीजे जो है मिलती है और यहाँ पे उन्होंने --

ब्राउनिश उसका बैकग्राउंड है यहाँ पे बैठने के लिए टेबल और चेयर अवेलेबल है चेयर्स जो है वो प्लास्टिक की है और टेबल भी ल--

उसका डिज़ाइन किया हुआ है और निचे अ जो फाउडेन है फाउंटेन बना हुआ है।

यह फोटो जो है एच_डी_ऍफ़_सी बैंक का ए टी एम का फोटो है जहाँ पे लाइन से लोग जो है वो अपनी कतार में खड़े है अपनी राह देख रहे है अपनी टर्म आने की --